बहोत सारे चेयर्स लगे हुए है और उसके ऊपर एक सीलिंग फैन भी दिखाई दे रहा हैं।

और टेबल बहोत ही साफ सुथरा लग रहा है।

और चारों साइड दीवाल दिख रहे हैं और सामने कुछ चीज बिखरा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

परदा लगा हुआ है और इस नीचे एलसीडी टी_वी भी दिख रही है नीचे फ्लोरिंग बहोत ही अच्छे से किया गया है।

की दुकान बहोत ही अच्छे से दिख रहा है जो की बहोत बड़ा दिखाई दे रही है इसकी बिल्डिंग जो की एक अच्छी बात है।

और यहां पास एक फैन भी लगा हुआ है।

नदी के चारों साइड पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो की अच्छी बात है।

यहां पर शासकीय हाई स्कूल क्रेशर जिला उमरिया मध्य प्रदेश का एक गवर्नमेंट स्कूल दिखाई दे रहा है।